सामने लोहे के दो खंबे लगे हुए हैं उन पर रस्सी लगी हुई है उसके नीचे साइड में टंकी है व्हाइट कलर की ग्रे कलर की टंकी रखी हुई है उसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा चेंबर बना हुआ है उसके साइड में एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ है नीचे साइड में एक ]

उसमें मछलियां मरी हुई है छोटी-छोटी मछलियां रखी हुई है एक साइड में बांस की टोकरी भी रखी हुई है तीन-चार अंकल लोग खड़े हुए मछली को बाट रहे है तो वे उसमें डाल रहे है टोकरी में।